जिसमें सभी प्रकार के मोबाइल वोबाइल बनते होंगे और सामान वमान भी मिलता है.

और एयरटेल का रिचार्ज होता है वोडाफोन का.

काफी लम्बा चौड़ा में है.

एक दोनों का बोनट खुला हुआ है.

जिस के बाहर एक बड़ा डब्बा में थर्मस बर्मस दिख रहा है.

और नीचे गड्ढा में पानी हल्का बुड़का दिख रहा है और सामने घर का गेट दिख रहा है.

यह एक सायलून हे बहोत अच्छा ऐ_सी सायलून हे.

एक जनरल स्टोर है.

जिसके ऊपर दो मिस्त्री दो लेबर है और घर में काम लगा हुआ है.

और एक बाइक खड़ी है सामने.

और एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और दो कुर्सी ऐसे ही रखा हुआ है.

ओर पीछे दो कुर्सी लगा हुआ है और एक कुर्सी में थरमस रखा हुआ है पानी वाला.

उसके ऊपर दो दिख रहे हे और घर वाइट कलर --

अ बिल्डिंग के ऊपर लाइट बंधा हुआ है.

और चारो तरफ हरियाली हे पेड़ पौधे हे और बोन-बोन्ड्री मारा हुआ हे.

यह दिखने मे लग रहा है की कुछ होटल वोटल जैसा चाहे ऑफिस होगा.

और एक रेड कलर का कुर्सी हे और निचे टाइल्स वाइस मारा--

जिसमे दोनों तरफ जंडा गाड़ा हुआ हे गेट के ऊपर.

और एक आदमी एक कुर्सी पे बैठा हुआ दिख रहा है और एक आदमी खड़ा है और ऊपर पंखा है.

जिसमें एक टेबल है और एक खुर्सी लगा हुआ है.

और एक बड़ा सा सरस्वती जी का म्-पोस्टर है और--

गुब्बारे और फूल से सजाया हुआ है।

और ऊपर बैनर में लिखा हुआ है विद्या स्वीट्स ऐंड उसके आगे नहीं दिख रहा है कुछ भी.

और कु कूड़ादान भी है।

यह एक सी_एस_पी बैंक है जिसके अंदर एक पोस्टर टंगा हुआ है.

जिसको चारो तरफ से घेरावा किया हुआ हे.